जो फोर्स मे की तरह है।

यह पिलर पर बना हुआ है। यहाँ नीचे --

आ रहे है। गाड़ी अनेक बहोत कलर का है। रेड है ब्लू है येलो है।

हवादार चारो बगल पेड़-पौधे भी है। अनेक तरह के खेल --

बहुत भीड़ लगी हुई है बस स्टैंड के नीचे --